इस पिक्चर में एक बहोत सुंदर घर है।

यह मुझे होटल लग रहा है इसमें काफी सुंदर डेकोरेशन है।

यह क्रिकेट के लिए टॉस कर रहे हैं।

बहोत सारे खेत भी दिख रहे हैं।

यहाँ बहोत सारी झाड़ियां लगी हैं।

इस पिक्चर में बहुत सारी बकरी है और बहुत बड़ा सा जंगल है।

और कुर्सी पे मोबाइल लेकर मिरर में सेल्फी ले रही है।

पीछे बहुत सुंदर-सुंदर तस्वीरे लगी हुई है।

बड़ी बड़ी यहां चट्टानें हैं और बहुत सारी हरी हरी घास है पेड़ पौधे --

सामने एक टैक्सी आ रही है।